इस चित्र में हरे रंग के पत्ते हैं। खुल्ला आसमान है और ज़मीन है और इस चित्र मैं कोई भी इंसान नहीं है।

इस चित्र मे यह नजर दिखाई दे रहा है खुला आसमान है हरे रंग के झार है और उधर दो अदमी लोग खड़े हैं ।

इस चित्र में हम देख सकते हे की बहु सोफ़े हे पर कोई भी लोग नहीं है और बहुत अच्छा लाइट सजावा सजाया हुआ है। महल जैसा है ये। लंबा है।

खुला सा आसमान है और इस चीज में कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

इस चित्र मे हम देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग है पर कोई भी इस बिल्डिंग के पास नहीं दिखाई दे रहा है। खुला सा जगह है खुला सा बादल है खुली सी हवा है।